मुझे यहां लाइट जलाया वहा भी दिख रहा है।

एक दुकान भी खुला हुआ दिख रहा है।

और मुझे यहां पर एक लोहे का सीढ़ी भी देखने को मिल रहा है।

ये काले रंग का कुर्सी भी देखने को मिल रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर कई सारे आदमी दिखाई दे रहा है।

उसके बाद मुझे तीन दुकाने दिखाई दे रही है।

मुझे तस्वीर पर सफेद रंग का एक फैन दिखाई दे रहा है एक टी_वी भी दिखाएं दे रही है।

चेयर्स पर कुछ बोतले भी रखा हुआ देखने को मिल रहा है।

उसके सामने में ही मुझे कुछ अंगूरे हरे और काले अंगूर दिखाई दे रहा है।

गाय के सामने में ही एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

मुझे जाली भी दिखाई दे रही है।